ये एक खूबसूरत और आलिशान बहुमंजिला इमारत की तस्वीर है जोकि लाइटों से सजा हुआ है प्रतीत हो रहा की दीवाली के चित्र का समय है

ये एक हौंडा कंपनी जो की दो पहिया वाहन बनाती है उसका दुकान है। यहाँ पे बाहर कइ दो पहिया वाहन भी खड़े हुए हैं।

बाड़ा चारो तरफ से लोहे की तार से ढका हुआ है।